जंजीर वगेराह सी दिखाई दे रही हे यहा पर येलो कलर का एक खंभा दिखाई दे रहा है पेड़ वगेराह भी यहा पर दिखाई दे रहे है।

एक यहा पर वाटर पार्क दिखाई दे रहा हे जिधर बहुत सारे लोग यहा पर नहा रहे है और एक बच्चा भी यहा पर दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पर एक व्हाइट कलर का बैनर यहा पर दिखाई दे रहा है। येलो और ब्लू कलर से कुछ लिखा हुवा है। कांच का गेट यहा पर दिखाई दे रहा है। खिड़की यहाँ पर दिखाई दे रही है। और एक व्हाइट कलर का नीचे कुछ लगा हुवा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पर पिंक कलर का बोर्ड लगाया। उस पे कॉफी की फोटो वैगैरा बनी हुई। कुछ लिखा हुवा। उस के पास मे भी एक बोर्ड बना हुवा। अंदर भी कोई दिख रहा है।

यहा पर एक व्हाइट कलर की बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है जो की उसका नाम लिखा गया है ब्लू कलर की यहा पर डिजाइन भी है और वहा पर नीचे शॉप वगेराह भी दिख रही है।

और कुछ लोग एक एक हेलमेट लगा के यहा पर दिख रहा कोल्डड्रिंक की बोतल वगेराह वहा पर दिख रही कैरिड वहा पर दिख रही है।